और उसके सामने भी हमे एक बोर्ड दिख रहा हैं जिस पर हमें मराठी में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर है एक शिहा दीख रहा हैं।

और यहां पर हमें नजर आ रहे हैं जो नीले कलर के है।

दो आदमी दिख रहे हैं जो एक आदमी कुछ उसमें डाल रहा है और एक आदमी नीचे देख रहा है।

और यहाँ पर हमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो झूले की तरफ देख रहे हैं और बड़े बड़े से झूले हैं।

जो हाथ जोड़ कर पानी में आधे चले जा रहे है।

और छे-छे वायर ज्वॉइन दिख रहे है और दो एक मीटर को एक --

और यहाँ पर हमे वाइल दिख रहे है।

बिल्डिंग के आजू बाजू हमें कुछ गाड़ियां पार्क करी ही दिख रही है और आजू बाजू हमें --

यहां पर हमे एक आदमी दिख रहे है और एक नीचे जाता हुआ आदमी दिख रहा है।

जिसपे कुछ लिखा है और ब्रेंड्स हेयर अवेलेबल हेयर ऑइल का--

यहां पे हमें एक दुकान दिख रही है दुकान के सामने हमें एक आदमी--

बैठा हुआ दिख रहा है और उसके सामने एक टेबल है।

गैलरी के पीछे हमें छोटे छोटे शोकेस और लगे हुए दिख रहे है।

एक खंबा है उसके ऊपर एक झंडा है उसके पीछे एक बंगला है।

और कुछ शो के भीं दिख रहें हैं।

और यहाँ पर हमे कुछ स्टिक भी दिख रहे है जो बम्बू है।

वी_इ_आर वॉल्कर लिखा है और उसके पीछे कलर में--

यहा पर हमे एक की फोटो दिख रही है अ की फोटो --

यहाँ पेसभी हमे लेडिज ही दिख रही है।

झाड़ दिख रहे है और एक बड़ी सी कार भी दिख रही है और एक हमे सड़क पर बाइक भी लगी हुई दिख रही है।

और और एक कार में पार्क किया हुआ दिख रही--

और कुछ किताबे भी दिख रही है।

और स्टेज भी दिख रहा है जिसका कलर हरे कलर का है और वहा पे हमें --

एक रिब्बिन लगी हुई दिख रही है जिसपे हैप्पी बर्थडे लिख है और भी कुछ --